हॉस्पिटल बहोत बड़ी छत हैं छत के नीचे बहोत सारी लेडीस है।

लाईन में लगे हुए हैं। सामने एक काउंटर है।

उम्म ब्राउन चड्डी पहनी हुई है पानी के अंदर हाथी है।

कार में काम चल रहा है आस पास एल्बेस्टर है।

और बहुत सारी मिट्टी है बहुत सारे औजार हैं और --

और लिखा है यहां पे अंदर जाना बिना आज्ञा के मना है।

मंदिर के अन मन यहां पे भगवान की बहोत सारी फोटोस है।

पार्क में यहां पे पार्किंग एरिया है बहुत सारी कार खड़ी हैं बहुत सारे--

ये एक बहोत बड़ा मैदान है यहां दशहरा हो रहा--

और अच्छी घास है आसपास पेड़ पौधे बहुत सारे--

लकड़ी का कवर्ड बना हुआ है बगल में कपड़े टंगे हुए हैं।

छत पे लाइटे लगी हुई है झूमर लगा है।

एक आदमी बाहर खड़े हैं अंदर दुकानदार खड़े हैं।

बहुत बड़ा जंगल है और वाइट कलर की दीवार है।

बाहर बहोत सारे कस्टमर खड़े अंदर दुकानदार खड़े हैं।

पोस्टर है ब्लैक पोस्टर है रेड पोस्टर है।

और शॉप नंबर एक सौ तेरह लिखा है तलून सोंस लिखा है।

दुकान के आगे का ड्रम है नीले कलर का।